लास्ट में एक ग्रीन कलर का डस्टबिन दिखाई दे रहा है रास्ता दिखाई दे रहा है एक शूज दिखाई दे रहा है।

और एक हरे रंग का ग्राउ ग्रा ग्राउंड है।

घास दिखाई दे रहा है बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पहाड़ दिख रहे हैं बादल दिख रहे है साफ आसमान है।